सामने की तरफ कुछ टेबल दिख रहे है रेड कलर का--

उसपे एक स्टैचू है काले रंग का बहोत सारी हरी हरी--

आसमान का रंग फिरोजी और सफेद दिख रहा है एक झाड़ी लगी है हरी रंग की।

यहां पर ढेर सारी सब्जियां दिख रही है उसमें--

इस सामुनों का रंग हरा पीला नीला गुलाबी है ऊपर की तरफ एक ये पीले कलर की लाइट दिख रही है नीचे फर्श दिख रहा है ब्राउन ब्राउन रंग का--